सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो शीशे का बना हुआ हैऔर एक बड़ी सी ब्लू कलर की टाइल्स टाइप का कुछ बना हुआ गेट है और उस पर लिखा है टाटा और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी है उस--

यह एक दुकान है जिसमे बाइक और स्कूटी बिकती है और यहां पर बहुत सारी बाइक और स्कूटी लगा हुआ है।

अलमारी पर और अंदर में स्टैचू है उन्हें भी कपड़ा पहनाया हुआ है और वो काफी डिज़ाइनर है यहां सामने बड़े-बड़े पोस्टर भी ड्यूक के लगे हुए है।

यहाँ से एक सड़क गुजर रही है सड़क के किनारे ऊंचे से कुछ बना हुआ है जो पीले और काला रंग से पेंट किया हुआ है बगल में लोगो के पैदल चलने का भी रास्ता बना हुआ है जो --